फोटो है उसमें काफी सारे बैट रखे हैं।

ये एक कैफेट एरिया है जिसका नाम है जिस पर पर चम्मच के साइन बने हैं।

सारी शेलफ बंपर बॉक्सेस भी बड़े पड़े हुए हैं एक पार्टी है।

एक टेबल पे में मेडिसिंस पड़ी है।

एक पास बेड पड़ा है लाल कलर की कुर्सियां लगी हैं सामने डस्टबिन है।